यहाँ पे लोग लाइब्रेरी में आ के सेल्फ स्टडी करते हैं सेल्फ स्टडी का अर्थात सा खुद से पढ़ना लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक पढाई करते है और यहाँ पे कोई शोर-गुल नहीं किया जा सकता अन्यथा उस पे --

यह चित्र तोते का है|

उसका नाम है स्नाकेस बार ।

दो लोग व दो व्यक्ति मिल कर को साफ़ कर रहे है यह ऐसा प्रतीत होता है कि बा वहाँ पर छट की तैयारी कर रहे हैं।